उसके साइड में कुछ टाइले लगी हुई नजर आ रही है। यह एक पक्का रोड बना रखा है कैफे के लिए।

ये स्कूल बहुत बड़ा है बड़े होने के कारण इसकी बिल्डिंग भी बड़ी है।

खाली एरिया है यहाँ पहाड़ का एरिया है।

यह फ्लाईओवर के ऊपर से लिया गया फोटो है।

इन रेक्को मे अलग अलग किताबे रखी हुई है ।